मोबाइल टावर भी नजर आ रहा है और जो तलाब है तलाब का पानी बहोत साफ नजर आ--

ये जो तस्वीर है तस्वीर एक बहोत बड़ा हॉल का तस्वीर दिखाया गया है जिसका नीचे टाइल्स लगा हुआ है क्रीम कलर का जो है।